ये एक टॉयज की दुकान है जिसमें काफी सारे चीजें वगैरह दिख रही है टंगी हुई दिख रही है और कुछ डब्बे में रखे हुए दिख रहे हैं।

यह एक नर्सिंग होम है।

होम की तरह दिख रहा है इसमें नर्सिंग का काम होता है।

ये एक स्कूल है जिसमें बच्चे नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं।

और सामने एक बोरिया है और काफी सारी तांबे दिख रहे यहा।

यह गार्डन यह एक गार्डन है जिसमें काफी टाइप्स के फ्लावर्स वगैरा हैं।

पौधें दिख रहे हैं। बोर्ड दिख रहा है सामने से सनलाइट दिख --

एक गेट है जिसमें काफी सारे कलर के पेंट हो रखे हैं काफी सुंदर--

एक जेंट्स है जो मूर्ति को मरती के पैर छू रहा है।

एक बोटल रखा हुआ दिख रहा है और घर दिख रहा है रोड दिख--

और काफी सारे खाने की चीजें हैं।

ये कार मैकेनिक एरिया है जिसमें काफी सारे कार दिख--

और शॉपनर वगैर दिख रहे हैं।

ये एक पेट्रोल पंप है जिसमें काफी गाड़ियां दिख रही हैं।